नमस्कार userdefined function in awk पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगेfunction definition का सिंटैक्स function call और return statement
हम यह कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu linux 1604 operating system और gedit text editor 3201
आप अपने पसंद के किसी भी text editor का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial का अभ्यास करने के लिए आपको इस website पर पिछले awk tutorials देखने चाहिए
आपको किसी भी programming भाषा का कुछ ज्ञान होना चाहिए जैसे c या c ++
यदि नहीं तो कृपया हमारी website पर समरूपी tutorials देखें
इस tutorial में उपयोगित files इस tutorial के पेज पर code files link में उपलब्ध हैं कृपया उन्हें डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट करें
अब user defined functions के बारे में सीखते हैं function सिंटैक्स निम्न है
और syntax सुगम है
यहाँ keyword function अनिवार्य है
function को call करने के लिए parentheses में arguments के बाद function का name लिखें
ध्यान दें function के name और argument के open parentheses के बीच space की अनुमति नहीं है
अब हम एक उदाहरण देखेंगे
हमारी awkdemo txt file में छठा field stipend दर्शाता है
मानिए कि stipend या तो शून्य है या चार अंकों से बना है
मान लीजिए stipend 8900 है तो इसे शब्दों में 8 हजार 9 सौ प्रिंट करें
यदि stipend 0 है शब्दों में शून्य print करें
मैंने user _ function awk named file में पहले ही code लिखा है
यहाँ मैंने single argument argval के साथ changeit named function लिखा है
यहाँ argval मूलतः हमारा छठा field है जो stipend है
function में पहले code जाँचेगा कि argval zero है या नहीं
यदि हाँ तो यह शब्दों में zero print करेगा
यदि नहीं तो code का else भाग निष्पादित होगा
else भाग में पहले हम substring function का उपयोग करके एकएक करके प्रत्येक अंक को extract करेंगे
और हम भिन्न indices पर array a में values संचित करेंगे
उदाहरणस्वरूप a 1 बायीं ओर से पहला digit या thousands place digit देगा
चूँकि हमारे पास केवल चार digits हैं मैंने चार indices का उपयोग किया है
आगे हम जाँचेंगे कि क्या elements शून्य के बराबर नहीं हैं और उन्हें सही क्रम में प्रिंट करेंगे
आखिर में हम output में नया line break देने के लिए backslash n character print करेंगे
फिर awk script में हमने dollar 2 printed किया जो दूसरा field है जोकि name है
फिर हमने parameter dollar 6 के साथ function changeit कॉल किया जो stipend है फाइल को निष्पादित करें
terminal पर जाएं फिर cd command का उपयोग करके उस फोल्डर पर जाएं जिसमें आपने फाइल डाउनलोड और एक्स्ट्रैक्ट की है
अब निम्न command type करें और enter दबाएं
हमें अपेक्षित output प्राप्त होता है
userdefined function में return statement भी शामिल हो सकता है
यह statement awk program के calling भाग में control returns करता है
इसका उपयोग बाकी awk program में उपयोग हेतु value return करने के लिए भी किया जा सकता है
यह इस तरह दिखता है return space expression यहाँ expression भाग ऑप्शनल है
अब array का average return करने के लिए function लिखें
मैंने file average awk में code लिखा है कंटेंट्स देखते हैं
हमने इस उद्देश्य के लिए function named avg परिभाषित किया है
इसमें पाँच parameters हैं
i array loop variable है
sum सभी array elements का योग है
n array में elements की संख्या दर्शाता है
ret function avg से रिटर्न होना वाला variable दर्शाता है
i के पहले अतिरिक्त space दर्शाता है कि variables i sum n और ret local variables हैं
वास्तव में local variables arguments होने के लिए इंटेंड नहीं हैं
आपको functions परिभाषित करते समय इस रीति का अनुसरण करना चाहिए
for loop में हमने array elements के योग और कुल संख्या की गणना की है
हमने elements की कुल संख्या के साथ य़ोग को विभाजित करके average की गणना की है और उस वेल्यू को variable ret में संचित किया है
यह function avg variable ret की value returns करता है
begin section में हमने 5 भिन्न संख्याओं के साथ array nums को परिभाषित किया है
print statement में हमने एक argument के साथ function avg कॉल किया जो array name है
अतः आपको arguments के रूप में local variables को pass नहीं करना होगा
terminal पर वापस जाएं terminal साफ करें
निम्न कोड command type करें awk space hyphen f space average dot awk एंटर दबाएं
हमें output 36 प्राप्त होता है आप कैलुकुलेटर का उपयोग करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं
अब एक और उदाहरण देखते हैं
मैंने string को reverse करने के लिए एक code लिखा है और इसे reverse awk named लिखा है
यहाँ video रोकें और flows को control कैसे करना है यह समझने के लिए code देखें फिर आउटपुट देखने के लिए इसे निष्पादित करें
नियत कार्य के रूप में awkdemo txt file में roll number field को reverse करने के लिए function rev का उपयोग करें
उदाहरणस्वरूप यदि roll number a001 है तो output 100a होना चाहिए
उसके लिए code code files में reverse _ roll awk के रूप में दिया गया है
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखाfunction definition का सिंटैक्स
function call और return statement
नियत कार्य के रूप में 2d matrix का transpose बनाने के लिए function लिखें
array से न्यूनतम value element return करने के लिए function लिखें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial project team spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएँ आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने पर प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में अपनी समयबद्ध queries post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस मिशन पर अधिक जानकारी दिखाए गए लिंक पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद